एक बिल्डिंग दिखाई रही बिल्डिंग के पास रोड दिखाई दे रहा है रोड के पास गार्डन दिखाई दे रहा है।

और जिम के साधन दिखाई दे रहे हैं ऊपर लाइटें दिखाई दे रही है और तीन पंखे दिखाई दे रहे है और--

पास में बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं पेड़ में--

बड़े बड़े पत्ते हरे हरे दिख रहे आकाश दिख रहा है।

और फूल दिख रहा है और पानी भी दि--

एक डिम डेम दिख रहा है डेम के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिख र--

पास में पेड़ दिख रहे पेड़ के पत्ते हरे हरे दिख रहे हैं।

एक दुकान दिख रही दुकान के पास बहोत सारे पेड़ देख रहे है लोग इधर उधर जा रहे हैं बाइके दिख रही है।

ये कुछ फंक्शन सा दिख रहा है बहोत सारी चेयर है बहोत सारे लोग हैं और गुब्बारे भी दिख रहे हैं पीले ह --

एक हरा हरा मैदान दिख रहा है मैदान में--

एक कपड़ों की दुकान दिख रही है उसमें--

हरे लाल नीले सब कलर के सलवार कमीज़ दिख रही है।

लाल कलर दिख रा है दो तीन धब्बे दिख रे है लाइट दिख लाइटे दिख रही है।

पेड़ के पीछे सूरज भी दिख रहा है और--

पेड़ दिखाई दे रही है बैंड बाजे का बहुत कलरफुल दिख रहा है।

बहोत सारे पक्षी दिख रहे हैं।

कुछ लड़कियां डांस कर रही है कुछ लड़के--

बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग में कुछ दुकानें दिख रही हैं।

एक लड़कीया भी दिख रही है।

कुछ लोग मच्छी काट रहे हैं। कुछ लोग--

बैठे हुए है कुछ औरते बेच रही है।

और पहाड़ के पीछे बड़े बड़े हरे हरे--

पहाड़ दिखे रहें हैं ऊपर नीला नीला--

और कुछ सामान भी दिख रहा है यह बहोत सारे पैसेंजर भी दिख रहे हैं।

और प एक आदमी वीरचैल लेके खड़ा हुआ दिख र बैठा हुआ दिख रहा है।

अ ऑफिस दिख रही है वो रेड कलर की दिख रही है।

बोहोत सारी केरे गाजर सब दिखा रहा है।